फूल लगे हुए हैं और--

की बिल्डिंग नजर आ रही है।

सीढ़ी की तरह लग--

और इस दुकान के--

इस फोटो में हमें एक--

का रंग सफेद--

इस फोटो में--